जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है बहुत बढिया डेकोरेशन करते हैं बहुत सारे लोग इनका डेकोरेशन करते हैं।

ये बहुत बढिया पेट्रोल पंप है | यहाँ बहुत सारे गाड़ी आते हैं तेल भरवाने के लिए डीजल पेट्रोल यहाँ की पेट्रोल और डीजल बहुत ही बढिया मिलती है ।

यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए और यहाँ पे जो माँगा जाता है वो पूरा होता है बहुत सारे लोग आते हैं।